क्योंकि दो तरफ से पानी आ रहा हैं और बीच में एक लड़का खड़ा है।

और वहां पर काफी सारे आदमी भी खड़े हैं और उसके पीछे एक ट्रांसफार्मर है।

और ऊपर सागर नाम का कुछ प पोस्टर लगा है।

एक लेडीज हैं ज जिसको कपड़ा दिखाया जा रहा है।

ये अंदर में घास लगे हुए हैं बहुत सारे और पीछे साइड में केले केले के पेड़ भी हैं।

लकड़ी लेकर जा रहा है टागा हुआ है लकड़ी को और उसका साइड में काफी सारे आदमी भी हैं।

ये उसके साइड मिरर के साइड में एक फूल रखा हुआ है जो कि माला टाइप का कुछ फ्लावर है।

और इसके नीचे एक आदमी काम कर रहा--

सामने दो सोफा नजर आ रहा है। इसके बीच में एक को टेबल जैसा कुछ है।

रखा हुआ है और उसके पीछे एक पोस्टर है।